यहां एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक नीला आसमान भी है।

ये एक पार्टी हॉल की फोटो है।

यहां पर बहोत सारे चेयर दिख रही है।

इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

ये एक होटल के हॉल की फोटो है।

यहां पर एक नीला ड्रम रखा हुआ है।

ये एक केक की फोटो है।

तीन गुलाबी रंग की बॉटलें रखी हुई हैं।

यहां पर एक टैंकर खड़ा हुआ है और एक टेंपो भी खड़ा हुआ है।

यहां पर एक बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ ऊपर पंखा चल रहा है।

ये एक एयरपोर्ट की फोटो है यहां पर स्टील की ब्रांचेस लगी हुई है।

यहां पर लड़कों के कपड़े रखे हुए है।

ये फोटो एक मोबाइल की दुकान की है।

यहां पे शंकर जी की मूर्ति रखी हुई है।

ये फोटो एक पार्टी हॉल की है।

जो कि पीले कलर का है यहां पास पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहां आस पास पेड़ भी लगे है।

ये फोटो एक गुफा की है।

यहाँ एक चिप्स कुरकुरे की एक दुकान हैं।